खेत में छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है।

बीच में फसल है। कहीं कहीं फसल नहीं है।

दुकान के अंदर में बहुत सारा सामान है और ऊपर में एल_ई_डी लाइट लगा हुआ है सफेद कलर का।

एक पेट्रोल पंप है जहां पर दो पेट्रोल पंप लगा हुआ है।

घर के सामने में है एक पोल जैसा जिसके ऊपर में लाइट है।

और महजिद के सामने में ही एक गेट लगा हुआ है उसके ऊपर एक छत है जिसमें बहुत सारा कजरी पड़ा हुआ है।

उसके इस साइड में यहां पर एक नीचे जाने के लिए पत्थर का एक चट्टान जैसा बनाया गया हुआ है।

साइड मे एक और घर है उसके बगल मे एक पेड़ लगा हुआ है। सामने मे ही एक साइकिल खड़ा है और उसके साइड मे एक और पेड़ है।

एक घर है घर के पीछे एक पेड़ है उसके इस साइड एक और पेड़ है।

और एक आदमी जो हाफ़ पेंट पहना हुआ है और एक आदमी पगड़ी बांधा हुआ है और खलता पहना हुआ है।

मंदिर के ऊपर में इस साइड में एक घर है जिसके सामने दो गेट लगा हुआ है।

मंदिर के नीचे में इस साइड में एक टेबुल रखा हुआ है जिस पर एक साड़ी ढका हुआ है।

घर है जहां की बहुत सारा सामान रखा हुआ है ब अलग अलग टाइप का सामान है।

तामने में दो ही शैंपू रखा हुआ है इस साइड में अलग अलग कप रखा हुआ है।

दुकान के इस साइड में एक और ग्लास रखा हुआ है।

हॉस्पिटल के सामने में ही एक पोस्टर लगा हुआ है उसके इस साइड में एक खिजुर का पेड़ है उसके सामने बहुत सारा गंदगी फैला हुआ है।

में बहुत सारा मशीन है दो डंबल नीचे में--

ऊपर में रंग- रंग का लाइट लगा हुआ है। सामने से हे एक आदमी आ रहा है और एक बगल में है। एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है।

ढाबा के बाहर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। जिसमें लिखा हुआ है मां तारा ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट और उसमें बहुत सारा खाने का तस्वीर भी बना हुआ है--

कुछ आदमी जा रहा है कुछ आदमी आ रहा है नदी बहुत बड़ा है।

राइट साइड में पथल है उसके आगे में बहुत बड़ा जंगल है।

सामने में ही दो बाइक खड़ा है मंदिर को राइस बॉल से सजाया गया हुआ है।

एक जंगल है जहां पर एक झरना जैसा बह रहा है। बहुत सारा वहां पर पत्थर है पीछे कर बहुत बहुत सारा पेड़ है।

और उसके नीचे बहुत सारा लोग है और वहां पर उसके ऊपर में एक तार खींचा हुआ है।

एक दुकान है जहां पर बहुत सारा सामान है दुकान के सामने मे एक ग्रीन कलर का टेबल रखा हुआ है।

दुकान के इस साइड मे लिखा हुआ है सेल रेट कास का कहता है।

सामने में दो आदमी खड़ा है जो अपने हाथ को अपने कमर पर रखा हुआ है और टोरजर पहना हुआ है।

पेड़ के बगल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

ऊपर मे लाइट लगा हुआ है सामने मे एक पोस्टर है जिसमे लिखा है होटल ।

एक झूला है जिसमे तीन बच्चा झूल रहा है पीछे पेड़ लगा हुआ है।